सामने एक बांध बना है जिसके ऊपर लाल कलर की रेली लगी है और नीचे बहोत सारा पानी भरा है।

साइड में स्टील की रेलिंग चारों तरफ है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

ऊपर वाली छत की सीलिंग सफेद कलर की है जिसमें बहोत सारी लाइटे लगी है।

इसमें दोनों साइड में बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं।

ये एक भैंसों का तबेला है जिसमें एक भैंस है और एक बछड़ा दोनों खूंटे से बंधे हैं।

सामने एक ऊपर वॉल खिड़की भी है।

ये एक शादी का महोत्सव है जिसमें एक दूल्हा दुल्हन और कुछ औरतें दिख रही हैं स्टेज पर।

ये एक कार एक गैराज है जिसमें कुछ कारे खड़ी है।

सामने एक दुकान की ओपनिंग है जिसमें कुछ फूल लगे हुए हैं।

बीच में एक डिवाइडर है जिसका कलर काला और सफेद है।

ये एक बहोत बड़ी सी पार्क है जिसकी साइड में टाइल लगी हुई है और एक गाड़ी दिख रही है।

नीचे कुछ कारे खड़ी हुई हैं और कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

तीनों आइसक्रीम के कलर अलग है।

साइड में लोहे की रेली लगी हुई है और दूसरी साइड पत्थर की रेली बनी है।

आगे एक सड़क है और सामने एक हरे कलर की रेलिंग लगी हुई है।

काउंटर के ऊपर कुछ हरे हरे पेड़ हैं और स छत पे भी कुछ हरे हरे पेड़ दिख रहे --

कुछ लोग ऑटो में बैठे हैं और दो लोग बाहर खड़े हैं।

और इसमें चारों तरफ सोफे भी हैं।

और दूसरी साइड तीन खिड़कियां बनी हुई हैं।

जिसमें लोहे के लंबे लंबे रोड लगाए जा रहे हैं।

और बहोत सारी कुर्सियां भी नजर आ रही हैं।

और इसमें कुछ पेड़ लाल कलर के भी है।